वायर हैं पंखा हैं फ्लोर है फ्लावर है खंभा है।

सॉकेट है लाईट है रंगोली हैं।

ए_टी_एम है ब्लू और रेड कलर का बैनर है सीढी़ है।